एक बाला ब्यूटी सलोन नज़र आ रहा है जिसमें ऑरेंज और ब्लैक कलर के --

एक ग्रोसरी शॉप दिखाई दे रही हैं जिसमे बोहोत सारे बॉक्सेस ब्राउन कलर के नज़र आ रहै हैं।

अगरबत्ती का स्टॉल नज़र आ रहा हैं और कई सारी बिस्कुट और मैगी भी नज़र आ रही हैं।

जूस रखे नज़र आ रहे हैं।

बोक्सेस रखे दिखाई दे रहै हैं कुछ बोक्सेस ब्लू कलर के रेड कलर के और ग्रीन कलर के नज़र आ रहै हैं।